इस मकान के बाहर एक गाड़ी लगा हुआ है फोर व्हीलर ।

और बहोत दो तीन कुर्सी है कुर्सी के ऊपर--

यह लंबा सा गली जैसा सड़क है।

यह मॉल बहोत खूबसूरत सा है।

और मशीन के बगल में एक डस्टबिन रखा हुआ है उस डस्टबिन में एक व्हाइट कलर का पेपर है।